ये पूरे पार्क में जो है यहां पे झूले लगे हुए हैं और यहां पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं।

इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि यहां पे एक बोट --

बहोत सारे लोग हमें दिखाई दे रहे हैं दो लड़के अपनी सेल्फी ले रहे हैं।

इस चित्र में हमें एक स्टील की--

यहां पे दो चेयर भी रखी हुई है और एक टेबल रखी हुई है.

इस चित्र में हमें मार्केट दिखाई दे रहा है इस मार्केट में एक ठेला भी खड़ा हुआ है और ये जो ठेला है--

मेन्स के कपड़े लटके दिखाई दे रहे हैं यहां पे कुछ औरतें और आदमी जो है वो आए हुए हैं।

पिक्चर आई हुई है सामने हमें एक लड़की दिखाई दे रही है जो नाच रही है जो लहंगा पहनी हुई है और एक--

इस चित्र में हमें कपड़ों की दुकान दिखाई दे रही है इनमें इस दुकान में हमें बहुत सारे कपड़े जो हैं वो लटके हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहां पे कुछ लोग भी बैठे हुए हैं ऊपर हमें सीलिंग दिखाई दे रही है और यहां पे नीचे हमें आदमी और औरत दिखाई दे रहे हैं।

इस चित्र में हमें रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा है।

इस चित्र में हमें दिखाई दे रहा है कि सामने कुछ स्कूल के बच्चे बैठे हुए हैं।

और उसी के सामने जो है एक बेंच रखी हुई है और उसी बेंच पर बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें जो है वो रखी हुई है सामने हमें कुछ चेहरे भी लगे दिखाई दे रही है।

इसके अंदर कुछ स्क्वायर में डिजाइन करा गया है और उसमें जो लाइन है वो लाल कलर की की गई है।

ऊपर हमें कुछ फोटो लगी दिखाई दे रही हैं।

इस चित्र में हमें एक अ वर्ड्स लिखे दिखाई दे रहे है बास्किन बिहार रॉबिंस और इसके साइड से कुछ सीढ़ियां भी गई हुई है और ऊपर आर_एन लिखा हुआ है।

बोर्ड लगा है चिल्ड्रंस बॉक्स और यहां पे कुछ बहोत सारी जो है बच्चों की खाने की चीजे मिल रही है।

इस चित्र में हमें एक होल्डिंग लगा दिखाई दे रहा है जिस पे लिखा है श्री बालाजी--

ऊपर इसपे दिल की कुछ लॉलीपॉप्स भी रखी हुई है जो--

अ अ जो है प्लास्टिक के स्टीकर्स लगे हुए हैं।

यहां पर सीढ़ियों पर कुछ बहुत सारी कुर्सियां रखी हुई है।

हमें एक कार खड़ी दिखाई दे रही है उस कार की जो है कार जो है वो खुली हुई है और उस--

पीछे हमें कुछ एक और आदमी खड़ा दिखाई दे रहा है वहां पर कुछ कुर्सियां भी लगी हुई है।

इस चित्र में हमें एक जगह दिखाई दे रही है जहां पर बहुत सारी जो है--

इस चित्र में हमें एक जगह दिखाई दे रही है जो सामने इसके हमें घर दिख रहा है और बाहर हमें रो--

पोस्टर्स भी लगे हुए हैं और कुछ सीढ़ियां जो है वो ऊपर की तरफ जा रही है।

इस चित्र में हमें एक अ स्कूल दिखाई दे रहा है जो कॉम्पिटीशन का है।

यहां पे जो है अं एक बांस का जो है कुछ रखा हुआ है चढ़ने के लिए--

इस चित्र में हमें एक मूर्ति रखी दिखाई दे रही है।

और वो जो मूर्ति है वो शांत स्वभाव में बैठी हुई है।